यह ट्यूटोरियल डेटाबेस डिजाइन पर पिछले ट्यूटोरियल के आगे का भाग है
और यहाँ हम निम्न विषयों को सीखेंगे डेटाबेस डिजाइन को सुधारना
नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण नियमों को लागू करना
डेटाबेस डिजाइन को जाँचना
पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि टेबल रिलेशनशिप्स को स्थापित करने के लिए प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ को कैसे निर्धारित करें
अब डेटाबेस डिजाइन के तरीके को आगे बढ़ाते हैं
पहले हम अपने डेटाबेस डिजाइन में सुधार करेंगे
अभी हमारे पास प्रारंभिक डिजाइन है हम टेबल्स को नमूने डेटा के साथ बना और भर सकते हैं
हम नमूना क्वेरीस फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं और देखते हैं कि हमारे सभी शुरुआती सवालों के जवाब मिले हैं या नहीं
हम अनावश्यक प्रतिलिपिकरण को जांच सकते हैं और डिजाइन में परिवर्तन करके उन्हें कम कर सकते हैं
हम कॉलम्स जोड़ सकते हैं जिन्हें हम शायद भूल गये हों
साथ ही डेटाबेस पूर्णता को पुष्ट करने के लिए हम व्यापार नियमों को भी लाइब्रेरी डेटाबेस में सम्मिलित कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप बुक्स टेबल में प्राइस कॉलम को अंकीय होना चाहिए
एक और व्यापार नियम हो सकता है वापस करने की तिथि पुस्तक को जारी करने की तिथि के एक महीने बाद होनी चहिये
या जब कोई विशिष्ट कार्य होता है आगे की कार्यवाही तुरंत करनी चाहिए
अतः यदि पुस्तक को वापस करने की तिथि बीत जाये तो हमें सदस्य को याद दिलाने के लिए एक ई मेल भेजने के लिए डेटाबेस में कुछ कार्यों को निर्धारित करना चाहिये
अतः चूँकि हम फिर से डिजाइन कर रहे हैं हम सम्भवतः नए टेबल्स कॉलम्स नियमों या प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं
और डेटा इन्टिग्रिटी न खोये यह सुनिश्चित करने के हमें पिछले सभी स्टेप्स में जाना होगा
आगे हम नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण नियमों को लागू कर सकते हैं
इनको देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमारे टेबल्स a ठीक से बने हैं और b कोई भी बदलाव एनोमलीस से मुक्त हैं जिन्हें हम पहले देख चुके हैं
डेटाबेस डिजाइन में नियमों या नॉर्मल फॉर्म्स को लागू करने को normalizationसामान्यकरण कहते हैं
अपने ट्यूटोरियल के पहले तीन नॉर्मल फॉर्म्स को देखते हैं
सबसे पहले पहला नॉर्मल फॉर्म देखते हैं
पहला नॉर्मल फॉर्म या 1एनएफ दर्शाता है कि सभी कॉलम वेल्यूस छोटी होनी चाहिए
उदाहरणस्वरूप बुक्स टेबल में प्राइस कॉलम की प्रत्येक सेल में केवल एक वेल्यू होनी चाहिए
मतलब कि कॉलम में केवल उस पुस्तक की कीमत होनी चाहिए और कुछ नहीं
उसी प्रकार से ऑथर्स टेबल में प्रत्येक फर्स्ट नामे सेल में केवल रचयिता का पहला नाम होना चाहिए
पहला नॉर्मल फॉर्म यह भी दर्शाता है कि कॉलम्स के पुनरावृत्ति समूह नहीं होने चाहिए
उदाहरण के तौर पर हम मानेंगे कि एक प्रकाशक ने 3 पुस्तकें प्रकाशित की
और पब्लिशर्स टेबल संरचना में निम्न कॉलम्स हैं पब्लिशर इद पब्लिशर बुक1 ऑथर 1 बुक 2 ऑथर 2 बुक 3 ऑथर 3
ध्यान दीजिये कि समूह बुक और ऑथर तीन बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं
अतः यदि हम ऐसे पुनरावृत्ति समूह देखते हैं हमें अपने डिजाइन को फिर से देखना चाहिए
अब यदि प्रकाशक दस और पुस्तकें प्रकाशित करता है हम टेबल संरचना को 20 कॉलम्स जोड़कर बदलने के लिए बाध्य होंगे
अतः हम देखते हैं कि टेबल डिजाइन डेटा बदलावों जैसा स्थिर नहीं हैं
साथ ही टेबल को पुस्तक या रचयिता के द्वारा खोजना और क्रमबद्ध करना जटिल हो जाएगा
अतः हम इस त्रुटी को टेबल को दो या तीन टेबल्स में विभाजित करके हल कर सकते हैं
हमारे उदाहरण में हम उपर्युक्त टेबल को पब्लिशर्स बुक्स और ऑथर्स में विभाजित करेंगे जैसा स्क्रीन में दिखाया गया है
यह डिजाइन टेबल को पहले नॉर्मल फॉर्म में लाएगा
और पब्लिशर्स और बुक्स के डेटा को बदलने पर भी यह टेबल संरचनाओं को स्थिर रखता है
अब दूसरा नॉर्मल फॉर्म देखते हैं
यदि टेबल 1एनएफ में है तो उसे दूसरे नॉर्मल फॉर्म या 2एनएफ में कहा जा सकता है
और प्रत्येक की रहित कॉलम पूर्ण रूप से सभी प्राइमरी की पर निर्भर हो जाती है
यह नियम लागू होता है जब हमारे पास एक प्राइमरी की हो जो एक से अधिक कॉलम सम्मिलित करे
उदाहरणस्वरुप बुकसिश्यूड टेबल को निम्न कॉलम्स के साथ देखते हैं
बुकिड मेम्बेरिड BookTitleऔर इश्यूडेट साथ ही बुकिड और मेम्बेरिड टेबल के लिए प्राइमरी की बना रहे हैं
अब बुकटाइटल कॉलम पर ध्यान दीजिये
हम बुक्स टेबल में बुकिड में देख कर बुकटाइटल पा सकते हैं
दूसरे शब्दों में बुकटाइटल केवल बुक इद पर निर्भर है और मेंबर इद पर नहीं
अतः यह सभी प्राइमरी की पर निर्भर नहीं है
इस टेबल को दूसरे नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें इस टेबल से बुकटाइटल हटाना ही होगा
और केवल उन कॉलम्स को रखना होगा जो प्राइमरी की और कॉलम्स दोनों पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं
इश्यूडेट कॉलम यहाँ पर रहेगा क्योंकि यह दोनों प्राइमरी की फील्ड्स पर पूर्ण रूप से निर्भर है
अब देखते हैं कि तीसरी नॉर्मल फ़ॉर्मल क्या है
टेबल को तीसरे नॉर्मल फॉर्म में कहा जाता है यदि वह 2एनएफ में होता है
और यदि सभी की रहित कॉलम्स एक दूसरे से स्वतंत्र हों
उदाहरणस्वरुप बुकसिश्यूड टेबल को इन कॉलम्स के साथ देखते हैं
बुकिश्यूड प्राइमरी की की तरह काम करती है booktitlememberइश्यूडेट और रिटर्नडेट
और यह मानते हैं कि वापसी तारीख के लिए लाइब्रेरी की नीति पुस्तक को जारी करने की तिथि के एक महीने बाद की है
अब बेस इश्यूडेट कॉलम का इस्तेमाल करके वापस करने की तिथि की गणना कर सकता है जोकि एक की रहित कॉलम है
मतलब रिटर्नडेट वाकई में केवल इश्यूडेट कॉलम पर निर्भर करती है और किसी अन्य कॉलम पर नहीं
और यदि हम रिटर्न डेट फील्ड में कोई अन्य तिथि प्रविष्ट करते हैं तो यह हमारी लाइब्रेरी की नीति का उलंघन होगा
अतः टेबल को तीसरे नॉर्मल फॉर्म में रखने के लिए हम टेबल में से रिटर्नडेट कॉलम हटा देंगे
अतः अब हम जान चुके हैं कि पहले तीन नॉर्मल फॉर्म्स को कैसे लागू करें
साधारणतः हमारा डेटाबेस डिजाइन 3एनएफ पर रुक सकता है
नॉर्मल फॉर्म्स और डेटाबेस डिजाइन पर अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही वेबसाइट्स पर जाएँ
अंततः अपना डेटाबेस डिजाइन जाँचते हैं क्योंकि हम अपनी डेटाबेस डिजाइन की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं
हम डेटाबेस संरचना बना सकते हैं यहाँ हम टेबल्स रिलेशनशिप्स नियम या प्रतिबंध फॉर्म्स क्वेरीस और रिपोर्ट्स बनाएँगे
और हम डेटाबेस को वास्तविक डेटा औए उपयोगकर्ताओं के साथ जाँच सकते हैं
डेटाबेस में डेटा जोड़ने अपडेट करने या मिटाने के लिए फॉर्म्स का इस्तेमाल करें
रिपोर्ट्स रन करें यह देखने के लिएकि रिपोर्ट के परिणाम उचित और सही हैं
चूँकि डेटाबेस इस्तेमाल के लिए तैयार है हम गति के मामले में इसका प्रदर्शन जाँच सकते हैं
हम डेटा को तेज़ी से पाने के लिए टेबल्स में इन्डेक्सिज़सूचियाँ जोड़ सकते हैं
और अपने डेटाबेस एप्लिकैशन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमें समय समय पर डेटाबेस अनुरक्षण करना चाहिए
अब हमने कर लिया है यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है लाइब्रेरी डेटाबेस डिजाइन में मीडिया नामक एक नई एंटिटी जोड़िये
मीडिया में डीवीडीएस और सीडीएस शामिल हैं
और यह या तो ऑडियो या विडियो हो सकते हैं
पुस्तकों की ही तरह डीवीडीएस और सीडीएस भी लाइब्रेरी सदस्यों को जारी कर सकते हैं
डेटाबेस डिजाइन प्रक्रिया का अनुगमन करें
और पहले तीन नॉर्मल फॉर्म्स को अपने डिजाइन में लागू करें
इसी के साथ हम लिबरऑफिस में डेटाबेस डिजाइन के तीसरे भाग के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने डेटाबेस डिजाइन में निम्न विषय सीखे 7
डेटाबेस डिजाइन को सुधारना
नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण नियमों को लागू करना
डेटाबेस डिजाइन को जाँचना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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद